मुझे इस चित्र मे शासकीय जिला पुस्तकालय नाम का--

लिख रहे हैं और कुछ चेयर्स भी दिख रहीं हैं।

जिसमें एक दो चेयर भी दिख रही है।